यहाँ आ एक पिंडी जैसा बना हुआ है उसमे कई सारे चित्र नजर आ रहे है।

यहाँ ए दो जालीदार बड़े से गेट दिख रहे हैं गेट खुल्ले हुए आधे खुले हुए हैं और वो चैन से बंधे हुए ए एक औरत त आ रही हैं और दो लोग जा रहे ए है औरत ने साड़ी पेहेन रखी है।

यहां एक प्लेट रखी हुईं है वो काली कलर की है उसके अंदर दो चम्मच रखी हुई है जो सफेद कलर की दिख रही है एक चम्मच है जो काटेदार --